और बोहोत सारे चौकी वॉकी रखे हुए हैं।

तालाब है जिसमें पानी दिख रहा है और अगल बगल पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक डांसिंग स्टेज है जहाँ पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई हुई है। यहाँ पर नीचे आदमी भी बैठे हुए हैं।

एक अंकल जो टोपी और चश्मा लगाये हुए हैं। ये जाड़े के मौसम का फ़ोटो है।

यह दिखने से कोई चादर लग रहा है और उसके ऊपर तीन चार कपड़े --